लोहे की तार की फेन्सिंग दिख रही है। दिख रही है। बकरियों के पैर दिख रहे हैं बकरियों के कान दिख रहे हैं। आसमान दिख रहा है।

एक गाड़ी है कुछ मजदूर है एक गाड़ी के अंदर खड़ा हुआ है बोरियां उठा रहा है बोरियां बहुत सारी पड़ी हुई है पीली बोरियां हैं सफेद बोरियां हैं ये किसी ह वेयरहाउस में है।

यह एक बस स्टेशन है तीन बसे दिख रही है चार आदमी देख रहे हैं एक आदमी के हाथ में बैग है।

एक आदमी बेड पर पड़ा हुआ है उसके पैरों में कुछ प्लास्टर जैसा लगा हुआ है उसने एक टांग ऊपर उठा हुई है उसने हाफ ब्लैक कलर का चड्डा पहना हुआ है।

ये एक दुकान है एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर फैन चल रहा है वो पड़ कुछ पढ़ रहा है पेपर पढ़ रहा है।

वो हरे कलर में दिख रहा है नीचे ब्लॉक्स लगे हुए हैं जो कि रास्ते जैसा है।

यहा पर कुछ बालिकाएं नृत्य कर रही हैं कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर देख रहे है तालियां बजा रहे कुछ नीचे बैठे हुए हैं।